पास में मुझे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है कुछ रेलिंग भी दिखाई दे रही है।

एक मंदिर टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है जिसके आगे मुझे फुल नजर आ रहे हैं।

पास में कुछ कार्टून भी दिखाई दे रहे हैं और इस के सामने की बात करें तो मुझे शीशा भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे कुछ फोटो दिखाई दे रहे है और इनके आस पास की बात करूं तो मुझे --

येलो कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है किसी के व्हाइट कलर के टी-शर्ट पहनी हुई है किसी के ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और उनके पास में --

मुझे तस्वीर में कुछ पत्थरों की कुर्सी नजर आ रही है पास में मुझे ट्रेन दिखाई दे रही है।

बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसके आगे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके आसपास की बात करूं तो मुझे मोटरसाइकिले नजर आ रही है।

एक टेंट भी दिखाई दे रहा है।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

एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है कुछ मोटर साइकिल नजर आ रही है।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

शीशे का गेट भी दिखाई दे रहा है।

जिसके पास में मुझे एक सरिया भी दिखाई दे रहा है।